इस फोटो में हमें ह हवन होते हुए दिख रहा नीचे कुछ मैट टाइप का बिछा हुआ जो पिंक कलर का--

और कुछ बाइक वगैरा है जो ब्लू कलर के हैं कुछ ब्लैक कलर के हैं कुछ रेड में हैं।

अंदर की तरफ एक और गेमिंग टाइप का है।

और बहुत सारे लाईट वाईट दिख रहे है जो बांस में लगे हुए है और कुछ रिब्बन टाईप का दिख रहा है पीछे एक घर दिख रहा है जो व्हाईट कलर का है कुछ --

पहले दिख रहा है पीछे एक कार दिख रहा है जिसमें सुखा है।

एक अ रेड कलर का बैग टाइप का दिख रहा है जिसे--

इस फोटो में हमें एक घर दिख रहा हैं जो येलो कलर का हैं कुछ बाहर वाइट क--

इस फोटो में हमे कार शोरूम दिख रहा है जिसमे दो वर्कर कार ठीक करते हुए दिख रहे है कार का कलर ग्रे कलर का है दो आदमी है जो ब्लू कलर के--

जो आसमानी कलर का है एक दिख रा है।

बड़ा हैं और एक वाइट कलर का घर दिख रहा हैं और एक फैक्ट्री दिख रहा है।

कुछ पताखे दिख रहे है जो ग्रीन और रेड कलर के --

कुछ गोल गोल वाइट टाइप के रेट्स वगैरह है नीचे कुछ छोटे छोटे हरे हरे घास वगैरह दिख रहे है एक कंटेनर टाइप का है जो ब्लू कलर का है।

कुछ लोहे के कील वगैरे है और कुछ आदमी बैठे हुए दिख रहे है।

इस फोटो में हमे एक घर दिख रहा है जिसके छत के ऊपर एक आदमी है जो लाईट लगाते हुए दिख रहा है ऊपर कुछ अ कपडे वगैरे लगे हुए है जो रेड येल्लो कलर के --

और कुछ फूल वाली डेकोरेशन किया हुआ है फूल का कलर ब्लू यल्लो व्हाइट कलर का है उसके बग--

काँच दिख रहा है और उसमे कुछ छत के नीचे मे कुछ लाइट वगैरे लगे हुए है।

और कुछ बोट टाइप के दिख रहा है जिसमें स्टार का अह लोगो बना हुआ है।

लोहे का पाइप टेक पे बना हुआ हैं जिससे पानी निकलते हुए दिख रा --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

इस फोटो में हमे व स्कूल दिख रहा है इसमें एक वाइट बोर्ड दिख रहा है जिसमे एक लेडीज --

यहाँ पढ़ाई करते हुए दिख रहे है बेंच के ऊपर कुछ कॉपी वगैरे रखे हुए है।

कुछ बैग्स वगेरह दिख रहे हैं टेबल पे रेड कलर का है।

इस फोटो में हमें हमें एक हॉस्पिटल दिख रहा है और एक काउंटर दिख रहा है जो व्हाइट कलर का है उसके ऊपर--